बहुत सारे गमलों में फिलहाल हरे और बहोत सारे रंग बिरंगे और हरे भरे--

यहां पर सामने की ओर एक गार्डन दिखाई दे रहा--

एक बहोत बड़ा सा नर्सरी दिख रहा है जहां पर--